कुछ टाइल्स दिखाई दे रहे हैं।

एक के चेहरे पर ब्लर नजर आ रहा और--

कुछ बिजली की तारे दिखाई दे रही है।

दे रहे हैं कुछ पेड़ पौधे दिखाई--

एक मूर्ति दिखाई दे रही है दीवार पर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बिल्डिंग दिखाएं दे रहे हैं।

यहां पर एक रोड दिखाई दे रहा है और--

यहां पर एक गार्डन दिखाई दे रहा है जहां पर एक बेंच दिखाई दे रहा है।

दे रहे हैं और एक स्कूटी दिखाई दे रही है और एक गाड़ी दिखाई --